डमियों पर लहंगा साड़ी सूट कपड़े पहने हुए हैं।

जहां पर कुछ आदमी और औरतें बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

दो सीढियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं और इसके आगे--

और चर्च दिखाई दे रहा है जहां पर नीले रंग का--

इस फोटो में हमें एक बहोत बड़ा--

जिसके ऊपर धरती की तस्वीर--

जिसके एक पिलर पर एक लड़की की तस्वीर बनी हुई नजर आ रही हैं।

यहां पर बहुत सारी लाइटें --

जहां पर हमें बोहोत सारे--

दो गाय चलती हुई नजर आ रही हैं।

इस फोटो में हमें एक बकरी का बच्चा--

इस फोटो में हमें एक गाड़ियों का गैराज --

मजदूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।